यहाँ पर मुझे एक रेलवे लाइन दिख रही है।

यहां पर मुझे एक कारखाने या एक जगह का दिक जगह दिख रहा है मुझे एक बड़ा सा बैनर दिख रहा है।

और मुझे एक ग्रीन कलर का बड़ा सा मशीन दिख रहा है।

और एक मार्बल की दीवार दिख रही है जो अलग अलग तरह के मार्बल से बनी है।

कारे दिख रही हैं और बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं और खाली जगह दिख रहा है।

की दुकान जैसी दिख रही है और दीवार पर बहोत सारे अलग अलग तरह के मार्बल लगे हुए लदे हुए है।